इसमें बहुत सारे लाइट्स हैं इस मकान के अंदर येलो कलर पुता हुआ है एंड कुछ--

यह एक बस है उस बस पर वातानुकूलित लिखा हुआ है एंड इस बगल ब इस बस के ऊपर कुछ आदमी हैं एंड इसके बगल में एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है।

ये एक ऐड्वर्टाइज़्मन्ट है जिसमें फ्री रॉयल आल्ट कैम्प ल लगा है।

एंड कुछ बच-बच्चे यहाँ पर पढाई कर रहे है एंड कुछ बच्चे यहाँ इधर-उधर खड़े हुए है।